टोकरियाँ रखी हुई है। टोकरियों में कुछ फूल रखें हैं कुछ फल रखें हैं एक मेज है।

ये जिम की मशीनें रखी हैं। मशीनें काले रंग की हैं। खिड़किया लगी हुई हैं। खड़िकियाँ लोहे की हैं।

इसमें आदमी खड़ा है और सारी लाइटें जल रहीं हैं। निचे लगी हुई है। जिम करने के लिए बोर्ड लगा हुआ है।